कलर की कुर्सी दिखाई दे रही है ऊपर मुझे टी_वी भी दिखाई दे रही है।

जमीन दिखाई दे रही है।

मुझे एक बरा सा पेड़ भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में काफी सारे ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है। पीछे बरा सा बिल्डिंग है।

सामने मुझे काफी सारा सूखा पेड़ दिखाई दे रही है।

और पहाड़ भी दिखाई दे रही है सामने मुझे एक झंडा भी दिखाई दे रही है।

कलर की कार्डबोर्ड दिखाई दे रही है।

काफी सारे बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रही है और जमीन भी दिखाई दे रही है।

और काफी सारा पेड़ भी दिखाई दे रही है।

मुझे एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

मुझे डायरेक्ट पीकॉक की मूर्ति दिखाई दे रही है।

एक पाइप भी दिखाई रही है।

सामने मुझे येलो कलर कि पेंटिंग भी दिखाई दे रही है।

मुझे दुर में एक घर भी दिखाई दे रही है।

फ्लॉवर पॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं।

के ऊपर एक छोटी सी घर भी है एक सिंटेक्स भी है।

काफी सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।